और किनारे पे गार्डन जैसा बनाया गया है।

और चारों तरफ लोग हैं जो कि बैठे हैं।

यहां पर एक लड़की दिखाई दे--

ऊंचा जैसा बिल्डिंग है और हरा भरा--

सड़क जैसा और किनारे पे--

और यहां पर बहोत बड़े बादल--